मुझे इस फोटो में गाड़ी नजर आ रही--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

इस फोटो में कांच नजर आ रहा है मुझे इस फोटो में साइकिल नजर आ रही है।

ये इस फोटो मे चैन नज़र आ रही--

मुझे इस फोटो में नदी नजर आ रही है मुझे इस फोटो में--

मुझे इस फोटो में हरियाली नजर आ रही हैं।

मुझे इस फोटो में अल्ट्रा डंडन नजर आ रहा--

फोटो में तालाब नजर आ रहा--

फोटो में बार्बी डॉल का सेट नजर--

जो नजर आ रहा है मुझे इस फोटो में मुकुंदपुर नजर आ--

मुझे इस फोटो में बदल नजर आ--

मुझे इस फोटो में घड़ी नजर आ रही--